ऊपर आसमान का कलर व्हाइट ग्रे दिखाई दे रहा है और कुछ फर्नीचर दीवारें दिखाई दे रही है जिनका कलर ब्लू व्हाइट दिखाई दे रहा है और कुछ व्यक्ति दिखाई दें रही है यहाँ--